आ आ वायु प्रदूषण भी फैलाती है यह तस्वीरें दिवाली के टाइम जो अनार वगैरह फोड़े जाते हैं पटाखे वगैरह फोड़े जाते हैं उसी की सब तस्वीरें हम यहाँ पर देख पा रहें हैं।